जो की येलो कलर की हैं उनके पीछे एक माला नजर आ रही हैं जो की मोतियों की हैं।

यहाँ पर जंगल का नक्शा नज़र आ रहा है जो की काफी हरा भरा है जो की लाइनो को दिखाया गया है जहा पे काफी बहुत सारे नाम लिखे हुए है जो की ब्लैक कलर से लिखे हुए है और यह पे--

यहाँ पर एक शादी का मंडप सजा हुआ है जिसमे बहुत सारे पिलर लगे हुए है जो की गोल्डन कलर के है।